यह दृश्य किसी माल का है।

यहां बहोत सारे आउटलेट है।

यहां पे एक एस्केलेटर भी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में एक सड़क दिखाया गया है।

पे लोग गाड़ी चला रहे हैं।

और सिग्नल का रंग हरा है।

इस जिम को लाइट से और बलूनों से बहुत अच्छे से सजाया गया है।

और यहां सबके सिर पे सफेद कलर की टोपी दिखाई दे रही है।

इसमें पीले और लाल कलर के गेंदे के फूल इस्तेमाल हुआ है।

रास्ते के बाजू में कुछ दुकानें हैं।

किनारे में ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर हैं।

नाव को टट पे किनारे बांधा गया है।

मोटरसाइकिल और स्कूटीया को सर्विस किया जा रहा है।

बहोत बड़े बड़े और घने घने वृक्ष दिखाई दे रहे है।

और एक सफेद मकान दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए जगह भी है।

जिनका मुंह ढका हुआ है।

जिसका नाम डेंटल हॉस्पिटल है।

यह एक किसम का पत्ता है।

इस दृश्य में कुछ गाड़ियां दिखाई दे रहा है।

और अच्छे से लाइट से डेकोरेट किया गया है।

यह दृश्य किसी पार्किंग पार्किंग वाले जगह की है।

यहां पे मस्जिद हिंदी इंग्लिश में और अ उर्दू में--

इस दृश्य में क्लास प्लस का एक बैनर लगाया गया है।

यहां भारत के पथ का रखा गया है।

बहुत सारे चीजें लिखा गया है जो अलग अलग भाषाओं में है।

और यहां पे प्लेट्स रखे गए हैं वजनवाले।

और कुछ लोग डेड लिफ्ट कर रहे--

कुछ बच्चे वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य किसी सुपर मार्केट की है जहां विभिन्न तरह के फल रखे गए हैं।

यह ऑफिस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

गाड़ी दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में कुछ बच्चे और आदमी फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक बड़ा नदी है।

बहोत बड़े बड़े वृक्ष और पेड़ पौधे हैं।

जिसका नाम बी_एम_एस हॉस्पिटल है।

और उसके ईर्द गिर्द छोटे छोटे पौधे हैं और बड़े बड़े पौधे भी हैं।

यह किसी तालाब की तरह प्रतीत होता है।

सड़क के ठीक बाज़ू में एक नदी दिखाई देता है।

इस दृश्य मे एक बड़ा पोस्टर है जिसमें ढेर सारे लोगों का फोटो है।

वो लोग एक दूसरों के साथ उनके मिले हुए उपाकृतियों को लेके फोटो खिंचाए हुए हैं।

इस दृश्य में दो काठ के मेज दिखाई दे रहे हैं।

और बैठने के लिए बहुत सारे चौकीए रखे गए हैं।

इस दृश्य में एक व्यक्ति लाल कलर के सोफे में बिठाई देते हुए दिखाई दे रहा है।

यहां एक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है जिसको फूलों से सजाया गया है।

मस्जिद के अंदर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

और मस्जिद के लाइटिंग बहुत ही शानदार है।

एक लड़की बैठकर कुछ बेचते हुए दिखाई दे रही है।

यह दृश्य किसी मस्जिद का दिखाई दे रहा है।